और वो कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी लगाया हुआ है वहाँ पे। दूसरी बगल एक दूसरा दूकानदार पूरा सब्ज़ी मंडी टाइप में लगा हुआ है।

यहां पे लोहे का गोल गुंम्बज भी बनाया गया है है।

गाछी पेड़ पौधा बहुत दिख रहा है एक खजूर का पेड़ है।

अनुपम ड्रेसेज अनुपम ड्रेसेज यहां पर कपड़े मिलते हैं।

यहां पे तार इसके आगे से कई सारे तार निकलते दिख रहे है फूलो से इसका दरवाजा सजाया गया है और लाइट्स भी जल रहे है इसके अंदर।